यहाँ जा के हम लोग बिरयानी खाते है और इसका बहुत आनद लेते हैं।

से लोग सिचाई करते है--

यह चिड़िया घर है और यहाँ बहुत सारे बन्दर है और अनेक प्रकार के और जानवर भी है|